एक मौलवी खड़ा है सफेद कुर्ता पेहन के उसके आगे एक--

ये एक बहुत ही खूबसूरत शॉपिंग मॉल है।

यह कोई दुकान लग रहा है।

सीढ़ी के नीचे दोनों तरफ दो मोटरसाइकिल खड़े हैं।

और स्कूल्ड के चारों तरफ पहाड़ दिखाई पड़ रहे--

और खेत के साइड में एक निर्माणा धीन--

बिल्डिंग लग रहा है जिसका निर्माण हो रहा है।